ये एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पर लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने जाते है।

जहाँ पर बैठ कर लोग अपनी प्रार्थना के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करते होंगे। इसमें --

और गार्डन में एक बहुत ही अच्छा बड़ा पेड़ लगा हुआ है और हरी-हरी घांस भी है। ये ये घर बहुत ही सुंदर लग रहा है जो दो मंजिल बना हुआ है।

यह एक प्रवेशद्वार बना हुआ है जो बहोत ही सुंदर और मनमोहक लग रहा है पीछे बहुत सारे पेड़ और बहुत हरियाली देख रही है।

और नाव कितनी है इ नाव कम से कम भी पांच छ है इसमें और पानी के बीच ख --

ये समुद्र का नजारा है और ये सामने गोवा का बीच लग रहा है और ये पानी की नाव लग रही है।

एक ढाबा दिखाई दे रहा है और ये बस ट्रैवल वाली बस है जिसमे लोग सवारी कर रहे है।